दुकान पे बहुत उनके भीड़ है मोटर साइकिल भी लगी हुई है रास्ते पे।

पेड़ पौधे भी है उसपे फूल भी बहोत अच्छे अच्छे आए हैं।